आप यहां से चने के साग और अन्य चीजें खरीद सकते हो रोड के दूसरी तरफ--

घर के आगे कुर्सियां डली हुई हैं।